ये एक अ- शोरूम वो है बार्बर की दूकान है और यह पर कुछ लोग चेयर बेठे हुए है और एक आदमी है जो चेयर पर बेठे हुए एक आदमी के बाल काट रहा है।

और इधर की तरफ एक बाइक खड़ी हुई है और एक लड़का भी खड़ा हुआ है सामने--

ये एक मंदिर का सीन है और यहाँ पर ये मंदिर है और यह पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगी हुई है और एक आदमी है जो यह पर पूजा कर रहा है।

और यहां पे बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है हर ओर ऊपर की तरफ टीन लगी हुई है और यहां पर एक डस्टबिन भी रखा है।

और सामने की तरफ एक यहाँ पे मेज रखी है ऊपर अ- घंटी लगी हुई है और इधर की तरफ ग्रील रखी है और चेयर भी रखी है दो चार--

यह एक बोहोत बड़ा मैदान है और यह पर जो है बोहोत सारे लोग बेठे हुए है भीड़ लगी हुई है और एक बोहोत बड़ी लाइट भी जल रही।

ये एक नाइ की दूकान है और यहाँ पर एक आदमी है जो बाल कटवा रहा है एक आदमी है जो बाल काट रहा है।

और इधर की तरफ एक तोलिया भी तोलिया रखी हुई है और बोहोत सारा सामान है शेविंग का--

ये एक पहाड़ी का सीन है और यहा पर ऊपर की तरफ बोहोत उची पहाड़ी है और सामने की तरफ बोहोत पेड़ है और यहा गाय बेंस है भेड़--

अ चराई जा रही है एक आदमी है जो इन्हें ले के यहाँ पर चरा रहा है।

और यहाँ पर मछली पकड़ी जा रही है और बोहोत सारे आदमी जाल पकड़ कर खड़े है जो मसले मछ्ली पकड़ रहे है और निकाल रहे है उसमे जाल में--

दो अ- लाइट अ- उसके अन्दर लाइट लगी है और बेकरी का सामान रखा हुआ है और यहाँ पर जो है यहाँ काउंटर है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है।

कुछ लग बेठे हुए है और कुछ यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग का सीन है और यह पर बोहोत सारी स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ी है कार खड़ी है और कुछ लोग जो है अंदर की तरफ जा रहे है और बहार की तरफ--

यहाँ पर अ- बोहोत एक बोहोत बड़ा रूम है और पर आराम करने वाली मशीन उम्म अ जो चेयर होती है मशीन वाली--

और यहां पे बहोत सारा डेकोरेशन का सामान रखा है और इधर की तरफ बहोत सारे बैलून और बहुत डेकोरेशन किया हुआ है।

ये एक पार्लर का सीन है और यह पर अ सैलून का सीन है और यह पर जो है दो आदमी है जो चेयर पर बेठे हुए है।

एक के अ- गले पे तोलिया पड़ा है और एक के गले पे कपडा पड़ा है और यहाँ पे बोहोत सारा शेविंग मशीन है।

तार भी बोहोत बड़ी बंधी हुई है एक बाल्टी रखी हुई है और ये जो है निचे इसमें तेल भर रहे है।

और भी बहुत खिलौने रखे हैं और यहां पे ठूस ठूस के इस लाइनों में भर रखें हैं।

डॉगी रखे है घोड़ा रखा है हाथी रखा है बहोत सारे खिलौने है और ऊपर की तरफ लाइटें भी जल रही है।

और एक बाइक है यह पर और उसके उपर छाता लगा हुआ है और सामने की तरफ शटर है और वहा पर एक आदमी खडा है यहाँ बोहोत सारी बाइक भी खड़ी हुई है।

यहाँ एक बोहोत बड़ा ग्राउंड है और अशोक चक्र का सीन है और वो एक थम्ब के उपर अशोक चक्र बना हुआ है।

ये एक गार्डन का सीन है और यहाँ पर बोहोत सारे गमले रखे हुए है और चारो तरफ इसमे--

सामने की तरफ एक लाइट है और एक काउंटर है और वहा पर जुमर टंगे हुए है और बल्ब टंगा है वहा दो तीन आदमी भी बेठे हुए है और जो पीछे की तरफ देख रहे है और जहा पर जुमर टंगा है उसमे लाइट जल रही है।

यहां पर एक सामने की तरफ कपड़े की शॉप है शॉप है और वो पर भवानी लिखा हुआ है और एक आदमी अंदर की तरफ है। एक आदमी यहां पे बाहर भी --

यहाँ पर समुन्दर का सीन है और यहाँ पर बोहोत पानी है समुन्दर का और यहाँ पर जो है बोहोत सारे टेंट लगे हुए है छोटे छोटे--

यहाँ किसी पार्क का सीन है और यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी हुई है और सामने की तरफ एक क्यारी बनी हुई है और एक सामने की तरफ घर बना हुआ है।

ये एक बोहोत बड़ी नदी का सीन है और यहाँ पर अ नाव भी घूम रही है बोहोत साड़ी नाव है और यहाँ की तरफ कमल के फूल के पेड़ भी लगे हुए है बोहोत सारे--

और इधर की तरफ चारो तरफ उसमें बाउंड्री बनी हुई है और इधर उधर घर है और ऊपर पुरे में पानी ही पानी है यहाँ बगुले भी है बहोत सारे बगुले है यहा--

और कुछ सामान भी है यह पर बोहोत सारा सामान रखा हुआ है यह पेड़ है एक और सामने सूरज है और पुरे में लाली माँ छाह रही है यह बोहोत सारे लोग--

डिजाईन बना हुआ है एक पेड़ है यहाँ पे और उ- अ- उस- उसके चारो तरफ अ- चबूतरा बना हुआ अहै और यहाँपे बहुत सारे पेड़ पौधे है।

और यहां पानी की टंकी भी है और पत्थर वाली और यहां पे बहोत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं कुछ ट्रेन में चड रहे हैं और कुछ उतर रहे हैं।

यहाँ पर सामने की तरफ बोहोत सारा सामान भी रहा हुआ है।

ये एक स्टेशन का सीन है और यह पर हम्म तेन लगी हुई ई जो असमानि कलर की है और यहाँ पर चेयर पड़ी हुई है बोहोत सारी--

पार करने के लिए और यह पे बोहोत बड़ा एक खम्बा भी खड़ा है।

सामने की तरफ वो बिल्डिंग बनी हुई है और उसमे एक दो तीन चार पांच माले की बिल्डिंग है और उसमे हर एक बिल्डिंग --

पे दरवाजे और खीडकी दिखाई दे रहे है और यह पर एक पेड़ है जिसमे ऑरेंज कलर के फूल लगे--

और इधर की तरफ पेंटिंग रखी हुई है सामने की तरफ और एक पेड़ बना हुआ है पेंटिंग में बोहोत सारी पेंटिंग है यहाँ--

यह यहाँ पर एक बोहोत बड़ा रूम है ज- जिसमे योगा हो रहा है यहाँ पर कुछ लड़के है कुछ लडकिया है जो पंजो के ऊपर खड़े है।

लाइटे भी लगी हुई है और यहां पर अ सामने की तरफ दरवाजा है और एक आदमी सामने खड़ा हुआ है।

यहाँ एक स्कूल का सीन है और यहाँ पर इसका गेट जो है ऑरेंज कलर से पेंट हो रखा है।

यहाँ बोहोत सारे आदमी है जो काम कर रहे है कुछ ऊपर एंगल के ऊपर ही बेठे हुए है फिटिंग कर रहे है।

और कुछ लगा रहे है और उपरक की तरफ लाइटे लगी है एक आदमी निचे की तरफ झुका हुआ है जो स्टूल के ऊपर और सीडी के ऊपर खड़ा हुआ है।

यहाँ एक मंदिर का सीन है और यहाँ पर कुछ लोग है याहा पर बोहोत अच्छा सजा हुआ है और यह पर ये नंदी महाराज है सामने शिवलिंग है और यहाँ पे--

बोहोत से लोग पूजा कर रहे है और यहाँ एक भगोना रखा हुआ है और यह पे एक बत्ती धुप बत्ती और अगरबत्ती लगी हुई है यहाँ--

यहाँ एक स्विमिंग पूल है और यह पर बोहोत सारे बच्चे और आदमी स्विमिंग कर रहे है और सबने जो है अ- सिर पे कैप लगा रखी है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा रूम है और यह पर चा- लाल कलर की यहाँ चेयर रखी हुई है और एक मेज रखी हुई है यहाँ पर उसके सामने एक चेयर है।

एक बोर्ड भी है ये कोचिंग सेंटर है और यह पर कुछ बोर्ड भी बने हुए है साइन बने हुए है किसी तरीके के अ- शायद ये ट्रैफिक रूल के साइन है और यह पर सिखाया जाता है।

यहाँ पर बोहोत बड़ी बिल्डिंगो का सीन है यहाँ बोहोत सारी बिल्डिंग है और पूरा का पूरा शहर है ऊपर से दिखाई दे रहा है और यह पे--

पीछे की तरफ ताला- तालाब है और उसमे काई भरी हुई है और यहाँ पे माट्टी भी है और यहा पे पेड़ लगा हुआ है।

तो यहा पे बोहोत सारे केक्टस के पेड़ है और तरह तरह के केक्टस है गमलो में लगे हुए है और यह पर ऊपर की तरफ टिन लगी हुई है।

दो पोस्टर लगे हुए है एक दरवाजा है सामने पर्दा लगा हुआ है बंद दरवाजा--

यह मदीना मस्जिद का सीन है और यहा पर दो उसके थम्ब बने हुए है और अन्दर की तरफ एक बोहोत बड़ा गेट लगा हुआ है और यह पर अ--